इस तस्वीर में एक पारक बगीचा दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है एक आदमी--

यह एक मारुति सुजुकी एरीना का शोरूम है।

एक काली गाड़ी भी खड़ी है।

जिसके बाहर वर्दमान भी लिखा हुआ है।

और थोड़ी सी दूर एक मोटरसाइकल भी खड़ी है।

पिक्चर दिखाई गई है।

पिक्चर दिखाई गई है। इसमें बहुत सारी नाव किनारे पर हैं।